इस चित्र में एक कमरे में एक सा लकड़े की संदूक दिखाई दे रही है और उसके अंदर ऊपर से काँच लाग है।

और पिलर लगे दिखाई दे रहे है और घर के छत दिखाई दे रहे है और बाहर में हरी-हरी जगह दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है धन्यवाद।

चित्र में एक बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है और कमरे में छ्ता दिखाई दे रही है और ऊपर छत पर एक पंखा नीचे टन--

इस चित्र में सफेद नीला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और यहाँ एक सीमेंट की बिल्डिंग है और काफी सारे ब्लू कलर के खिड़किया दिखाई दे रही है।

इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है और म-मिट्टी के घर जैसा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एका कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में एक खिड़की दिखाई दे रही है और खिड़की के ऊपर आ कुछ लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और यहां का पिंक कलर के टेबल पर है धन्यवाद।

घर में कैमरा दिखाई दे रहा है दरवाजे खिड़की बंद दिखाई दे रही है और कुछ सब मशीन है तीन-चार मशीन है और यह अजीब करने के लिए आते है